एक लड़का बैठा हुआ है पीले कलर की शर्ट पहन के।

आजू बाजू में ग्रीलें बालकनी बनी हुई है नीचे दो तीन दुकानें हैं जो बंद है।

इसमें दो से तीन कारें पेट्रोल डलवा रही है और जिसमें दो बच्चे खड़े हैं।

जिसमें व्यक्ति आना जाना कर रहे हैं चलती हुई सीढ़ी दिखाई दे रही है एक व्यक्ति फोन में बात करते हुए दिखाई दे रहा--

ए ऊपर दो तीन कलर की लाइटें दिखाई दे री है सफेद कलर की बाउंड्री वाल बनी हुई है।

और बाजू से सूरज का रिफ्लेक्शन आ रहा है पीछे एक येलो कलर की ईमारत--

फोटो देखके ऐसा लग रहा है कि यह किसी झील की फोटो है जिसमें पत्थर के बड़े बड़े चट्टान बने हुए हैं।

तलाब है नदी है नदी में पानी है नदी के आइट साइड --

फोटो देख के ऐसा लगता हैं कि यह किसी स्कूल का फोटो है जिसमें बाहर एक--

पीछे साइड में ब्लैक पर्दे लगे हुए है ऊपर दो तीन बल्ब है आजू-बाजू में ट्यूबलाइट --

फोटो देखके ऐसा लग रहा है कि यह किसी सब्जी मार्केट है।